यहां पे हमें एक एल_इ_डी लगी हुई दिख रहा हैं एक ए_सी लगा--

और हमें यहां पे गेस्ट भी बैठा हुआ दिख रहा है।

अ इसी प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं।

कुछ औरतें मच्छियां खरीदने के लिए आई हुई हैं।

हमें यहां पर कुछ फ्रिज की जैसा दिखाई दे रहा है।

पीछे हमें बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं हमें यहां पे मिट्टी दिखाई दे रही है।

यहां पे हमे कुछ छोटे छोटे शो सोलर पैनल्स लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में हमें कुछ मूर्तियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं।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

हमें पीछे काले रंग की मूर्ति दिखाएं--

ये दुकान बहोत बड़ी है यहां पे और भी बहोत सारा सामान रखा हुआ है जैसे पेंसिल होगी पेन वगैरा--

और हमें यहां पे कुछ औरते दिख रही है।

यहां पे हमे छोटी छोटी कटोरी दिख रही हैं जिनमें चावल डाले हुए हैं।

एक हमें गिलास में धार दिखाई दे रही है।

तैयारी की हुई है यहां पे हमें सफेद और गुलाबी रंग के बैलून दिख रहे हैं।